बच्चों की गाड़ियां दिखाई दे रही है।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

न्यू ताज हेयर सैलून लिखा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक कमरा दिखाई दे रहा है।

बोर्ड पर निकॉन दिखाई दे रहा है।